और एक मंदिर बनाया गया है।

तस्वीर में आप श्री कृष्णा एक ज्वेलरी शॉप देख सकते हैं।

जिसके यहाँ बहुत सारे फल उपलब्ध है साथ ही बगल में बहुत सारी पत्ता गोभी रखी हुई है और यह व्यक्ति एक मोबाईल अपने हाथ में लेके नंबर डाइल कर रहा है।